इस क्षेत्र मे रोड दिखाई दे रहा हैं विंडोज दिखाई दे रही हैं दीवाल दिखाई दे रही हैं रेड कलर का बोर्ड दिखाई दे रहा हैं जिसमे वाइट कलर का होरा फ़ूड मेटल लिखा हुआ हैं।